और छत पर पे भी लोग खड़े हुए हैं।

इस इमेज में एक स्कूल की गली गैलरी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ बच्चे खड़े होकर ड्राइंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

और माला भी पहनी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में ढेर सारी दुकाने दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ कार भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

कुछ लोग बैठकर यहां पर इंजॉय करते नजर आ रहे हैं।

एक लकड़ी की बाउंड्री के ऊपर सुंदर सा मोर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।